जहां पर एक डबल बेड रखा हुआ है जिस पे आसमानी कलर की फ्लावर प्रिंट वाली बेडशीट बिछी हुई है।

की जाती हुई दिखाई दे रही है यहां पर बहोत सारी बाइके सर्विस पे खड़ी हुई नज़र आ रही है।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

ये किसी हाल की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर रेक्स में बहोत सारी बुक्स रखी हुई दिखाई दे रही है।

ये किसी एस_बी_आई बे के बाहर के ए_टी_एम की तस्वीर दिखाई दे रही है।

यहां जिम में पीछे की तरफ बहोत सारी एक्सरसाइज मशीनें भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर एक पत्र का बॉक्स भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

पोस्ट ऑफिस के गेट के अंदर की और खड़ी हुई है और एक गाड़ी बाहर की ओर खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

पीछे की ओर बिल्डिंगे में भी बनी हुईं दिखाई दे रही हैं।

मार्केट की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारी दुकानें बनी हुई नजर आ रही है।

ये किसी मकान की तस्वीर दिखाई दे रही है जोकि किसी आयुष आयुर्वेदा क्लिनिक की --

यहां पर दो पानी के मटके भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और बहोत सारे छोटे छोटे पौधे भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।